काफी सारी मछलियाँ नजर आ रही हैं आदमी ने सेंडो पहनी है।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

इस चित्र में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

पेटिस और चिप्स के पेकेट रखे है।

एक हमें एक्टिवा दिख रही है।

इस चित्र में एक शोरूम नजर आ रहा है।

एक आदमी खड़ा हुआ है।

इस चित्र में एक रेस्टोरेंट दिख रहा है।

लोग दिखाई दे रहे हैं।

काफ़ी सारे लोग नजर आ रहे हैं।

तीन डमी नजर आ रहे हैं।

एक टेंपो नजर आ रहा है।

इस चित्र में एक खेत दिखाई दे रहा है।

कोल्ड ड्रिंक की बोटल रखी है।

कुछ आदमी दिख रहे हैं।